हरा भरा पेड़ बा ईटा का दुआर बा बगल में घर बा बाल्टी धईल बा।

इ मिठाई का दुकान ह बहुत निक निक मिठाई बा गो रसगुल्ला बा पेरा बा।

इ शायद बुद्ध भगवान हउव बहुत अच्छा लागतन इनके लगे पानी का बॉटल धइल बा। क्रीम कलर हल्का रंगल बा।

कपड़ा का दुकान ह। जहां स्वेटर भेजाता। बहुत अच्छा अच्छा स्वेटर बा पीला कलर क गुलाबी कलर क काला कलर क नीला कलर क हरा कलर क लाल कलर क काला कलर क।

व्हाइट कलर क बा आसमानी कलर क बा नीला कलर क बा लाल कलर क बा।

बहुत अच्छा-अच्छा घाँस बा बहुत अच्छा लाता देखले में। रंगीन-रंगीन --